यह दुकान ये दुकान का करने के लिए डेकरैट किया जा रहा है।

यहाँ दुकान शॉप के आगे --

यह एक बहुत बड़ा बस स्टैन्ड नजर आ रहा है | जहाँ दो तीन बस खड़ी हुई है जहाँ पे बहुत सारे आदमी अपने बस का इंतज़ार करते हुए सब्र कर रहे है जो की बहुत ही खूबसरत सा बस स्टैन्ड दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे रेल की पटरी पटरी दिखाई दे रहा है जो रेल के पटरी के ऊपर एक बहुत ही रेलवे रेलवे स्टेशन --